इसमें एक चित्र दर्शाया गया हे । चित्र में एक गाँव को दिखाया गया है।

उस गांव में एक सफेद रंग का मंदिर है। पीछे पेड़ खड़े हैं।

सामने एक चित्र दर्शाया गया है चित्र के एक किला है और किले के सामने एक लड़का खड़ा है बराबर में डस्टबिन पड़े है।